के यह देखने में बहोत ज्यादा अच्छी लग--

इमेज में मुझे एक बहोत सुंदर महल दिख--

हे यह मंदिर में माता जी--

है इसका नाम राघव ट्रेडर्स है जो--

सुंदर स्टेज दिखाई दे रहा--

मुझे एक लड़का बैठा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में मुझे एक पेट्रोल पंप दिख--

है और उसके साथ बोहोत--

एक किराने की दुकान दिख--